इसमें सड़क दिखाई दे रही है। सड़क में लगे हुए बिजली के कुछ खम्बे दिखाई दे रहे है। इन खंभो के ऊपर --

आं कुछ लडकिये और कुछ लड़के हाथ में मोमबत्ती लेकर यहाँ खड़े हुए अ दिख रहे हैं‌।

में एक दुकान दिखाई दे रही है। जिसमे फ्रिज रखा हुआ है पंखा लगा है लाइट लगी है एक माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मंदिर अ कचोरी नाथ जी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मंदिर के सामने एक अ घंटी लटकी दिखाई दे रही है। मंदिर के अंदर शंकर जी का एक शिवलिंग रखा हुआ दिख रहा है।

इसमें एक जिम दिखाई दे रही है। जिम पर लाल और काले कलर की मैट बिछी हुई --